यह एक बस है बस में एक आदमी हाथ में सब्जी लेकर बैग लेकर ऊपर में चड़ रहा है एक अंदर से आ रहा है इसके बाद बस --

इसके नीचे मे स्थान का लग रहा है अगल-बगल बहुत बड़का पेड़ है पेड़ में दू ठो गाछी गाछी में दु तीन ठो आम फरल भी हेय।

उम्म्म एक बहुत बड़ा सा मकान है मकान में टीचर डे होता है आगे-पीछे आदमी बैठा हुआ है लेडीस जेन्स बैठा हुआ है पूरा बैलून से सजल है।

एक बहुत बड़ा-सा बैंक है बैंक के अंदर मे पैसा निकालने के लिए सभी आते है इसके आगे पीछे पूरा भरल है इसका आदमी है।

सेन्टेन्स में होता है बी वन बी वन प्लस इसमें |